यहां बड़े-बड़े चट्टान नजर आ रहे है ।

दरवाजे के पास तीन कुर्सियां लगी हुई है।

यहाँ एक नाई एक आदमी का दाढ़ी बना रहा है।

मंदिर के दरवाजे पे ऊपर तीन मूर्तियां बनी हुई हैं।

यहां की शेट्टर खुला हुआ है।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

और पास ही में एक बहुत बड़ा बुक स्टोर नजर आ रहा है|

बोहत ही सुंदर लग रहे हैं और ये चर्च भी बोहोत सुंदर लग रहा है।

और मूर्ति के आस-पास बोहोत सारे गुब्बारे लगे हुए हैं।